यह एक रंग मंच हमें दिखाई दे रहा है इस रंग मंच पर--

कुछ स्त्रियां नृत्य करती हुई लोक नृत्य करती हुई दिखाई दे रही है यहां पर आप देख सकते हैं कि काफ़--

पीछे कुर्सियां लगी है और पीछे आप देख सकते है माता रानी गणेश भगवान सभी देवी देवताओं की--

हमें बहुत ही सुंदर सा एक होटल में बहुत ही खराब तरह से खा पी कर रखे गए प्लेट्स जिन--

लिखा हुआ है डिजाइन करके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है।

नजर नहीं आ रहे हैं बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं बीच में ग्रीन कलर की कारपेट बिछाई गई है और ऊपर लाइट्स लगी हुई है बहोत ही सुंदर सुंदर--

हमें बहोत ही सुंदर सा नजारा दिखाई दे रहा है जहां पे झंडा फहराने के लिए बांस के इस ऊंचे ध्वज को बहोत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है।